यहाँ पर एक गेट है और यहाँ पर लिखा हुआ अमर उजाला के गौरवशाली पाँच वर्ष का जश्न --

ये कहीं का न कहीं ऑफिस का सीन है और यहाँ बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं मेज लग पड़ी हुई है और उसके ऊपर बहोत सारी रद्दिया रखी हैं और यहाँ कुर्सियों पर बहोत सारे लोग बैठे हैं।

यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट पे यहाँ पर मेज लगी हुई हैं और उनके च उन उनके दोनों तरफ जो है कुन दो-दो कुर्सियाँ लगी हुई हैं।

और यहाँ पर बहोत सारी पेंटिंग भी लगी हैं ऊपर ए _सी लगा है और यहाँ पे बैलून लगे हुए हैं रेड व्हाइट और ब्लू कलर के --

और एक आदमी है जो मेज पे ये लैपटॉप लेके बैठा हुआ है और एक आदमी --

यहां पे विमल स्टोर मर्चेंट्स की दुकान है इसमें लिखा गा--

और ब नजदीकी रेलवे अह अह अह सी--

ये कपड़ों का शोरूम है और यहाँ पर जो है बाहर की तरफ दो स्टोचु लगे स्टैचू लगे हैं।

यहां पर कुछ बच्चे हैं अह जो अह फोटो खींच रहे हैं सेल्फ और और यहां पर एक आदमी बैठा कुर्सी पर और मेज मेज ले रखी उसने पतली सी और उस पे जो है--

और गाड़ी के बराबर से ही एक बाइक और खड़ी है और इधर की तरफ भी बहोत सारी --

और उसपे जो सीढ़ियां लगी है उसपे बच्चे लटक लटक के झूलते है।

फोन चला रही हैं और कुछ खा रही हैं और यहाँ पे कूलर भी लगा हुआ है और एक बाहर की तरफ गेट है बहोत बड़ा अंदर और यहाँ पे एक पानी भरने का भी यहाँ पर एक ड्रम सा रखा हुआ है।

ये छठ पूजा का प्रोग्राम है और यहां पर औरतें बड़ी सुंदर सुंदर साड़ियां पहन रखी हैं जिसमें नीली पीली हरी गुलाबी लाल--

औरअअअ ऊपर की तरफ पंखे लगे हुए हैं और ए_सी भी लगा हुआ है यहाँ और बहोत सारी लाइटें भी हैं यहाँ --

यहां पर एक स्कूल है और स्कूल में जो है कुछ लड़के हैं जो कैंडल बना रहे हैं और मेजे रखी हुई है उस पे और भी नीचे बेचें रखी है।

और यहाँ पीले रंग के फूल हैं और इउ ऊपर की तरफ भी गैंदे के फूल लगा रखे हैं गुलाबी रंग के फूल हैं ।

और दरवाजे पे भी नीले कलर के फूल हैं और रेड कलर के गुलाब के फूल हैं बहोत सुंदर लग रही है गाड़ी ये --

ये बहुत बड़ा एक ग्राउंड है और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो यहाँ पर अअ और यहाँ पर जो है गुलाबी रंग के अ यहाँ घर वर कुछ बने हुए हैं घर से रूम से --

और एक कॉस्म कॉस्मेटिक की अ दुकान है और यहाँ पर बहोत सारा कॉस्मेटिक का सामान भी रखा है यहाँ क्रीम लिखी है लिपिस्टिक रखी है और यहाँ पर कुछ डिब्बे भी रखे हुए हैं।

जो यहाँ पर दुकान में अंदर बैठा हुआ है और सामान बेच रहा है और एक बाहर की तरफ है जो सामान देख रहा है और--

और उसके नीचे मेज लगी हुई हैं कुर्सियां लगी हुई हैं बहुत सारी और बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर अह जगह जगह कुर्सी हैं सोफे लगे हुए हैं।

यहाँ पर अंधेरा हो रखा है और यहाँ पर बहोत सारे लोग दिवाली मना रहे हैं यहाँ साड़ी सफेद साड़ियों में औरतें हैं जो अनार चला रही हैं दो तीन अनार हैं और उधर दुकान खड़ी ट्रक खड़ा हुआ है एक --

पैट्रोल पंप है और यहाँ पर जो है अ लाल और काले कलर के --

और एक साइकिल नीचे को गिरी हुई है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ पर --

और यहाँ पर एक घर है घर के सामने ही ये पूरा का पूरा --